एक बस स्टैंड है और ये रात का समय है यहाँ पे एक लाइन से बहुत सारी बसे लगी हुई है जो खुलने के लिए तैयार है।

यहाँ पे बस रुकी हुई है बस स्टैंड में गाड़ियां भी रिपेयरिंग होती है और लोग यहां से गाड़ी पकड़ने आते है यहां बस खड़ी रहती है।

मरीजो को देखते हैं और फिर उन्हें दवाइया देते है वो मेडिकल हॉल की दवाईया लेते है और काफी अच्छे से सजाया हुआ है और साफ-सुथरा है ये क्लिनिक बहुत ही अच्छे से बनाया हुआ है।

बहुत ही सुन्दर सा बना हुआ है काफी बड़ा क्षेत्र में फैला हुआ है ये बहुत ही अच्छा लग रहा है बहुत अच्छी पिक्चर ली गई है।